और कुछ मशीन लगे हुए है और ब्लू कलर की एक टैंक भी लगी हुई है और एक पाइप भी लगी हुई है।

और वो चाय पी रहा रहा है और उसके बगल में एक हाथ दिख रहा है जिसके हाथ में टी हैं और सामने एक टेबल है जिसमें नैपकिन और एक चस्मा भी रखा हुआ है।

पेड़ पौधे लगे हुए है और मंदिर के आगे रेलिंग भी लगी हुई है।

पोल है जिसमें बैनर लिखा हुआ है इंडियन ऑयल जिसका कलर ऑरेंज है और एक रोड भी है जिस के सामने से एक कार आ रही है जिसका लाइट जल रहा है।

और इसमें बहुत सारे पोस्टरे लगी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है सुपर सेल बाय टू गेट वन फ्री और बहोत सारे डम्मी भी हैं जिन्होंने कपड़े पहने हुए है।

और बड़े-बड़े फोटोज भी लगे हुए हैं और यहाँ इसका नाम वी मार्ट है और इसकी बिल्डिंग में कुछ छोटी-छोटी लाइटे भी लटकी हुई दिख रही हैं।

और नीचे सीढियाँ हैं और दीवालों का कलर हरा है और आगे एक और घर है जिसका कलर ब्लू है।

और वो एक ऐटीएम् के सामने खड़े हुए हैं और उस ऐटीएम् का नाम है एसबीआई --